लाइट्स भी है और यह जगह बहुत ही सुंदर भी है।

यहां दो डॉक्टर है।

और यहां बहुत सारे--

ये झरना है यहां बहुत सुंदर है।

यह बहोत सुंदर दिख रहा है।

यह एक रूम है।

यहां कुछ लोग हैं।

है यहां बहोत सारे लोग बैठे हैं।

हैं यहाँ कुछ लोग भी हैं।

है यहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।

यहां बहुत सारी लाइट जल रही--

हैं और यहां बहु सारी लाइट --

का मूर्ति है और यहां बहुत सारे लोग खड़े हैं।